यहां पे एक बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है।

जिसपे एक आदमी का फोटो लगा हुआ है बगल में कुछ लाइट जल रहा है।

येबुल बगल मे कुछ काले रंग के चेयर दिख रहे है।

जिसपे एक चार्जर दिख रहा है और यहां एक बोतल दिख रहा है बगल में एक लैपटॉप दिख रहा है।

यहां पे एक लाइट जल रहा है।

पीछे में एक फैन दिख रहा है धूप की रोशनी पड़ रही है।

घर के अंदर एक टेबल रखा हुआ दिख रहा है।

यहां पे बोर्ड के ऊपर एक आदमी खड़ा दिख रहा है और वह शर्ट पहना हुआ है लाल रंग का।

यहां पे कुछ खिड़कियां दिख रही है यहां बहुत सारे मैडम दिख रहे हैं यहां कुछ बच्चे दिख रहे हैं बच्चे के गले में आई कार्ड दिख रहे हैं और बच्चे सभी हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं।

पीछे में आसमान दिख रहा है हल्का फुल्का यहां पर एक लेडिस दिख रही है उसके बगल में एक फ्रेम लगा हुआ है जिसपे एक लड़की का चित्र बना हुआ है।

नीचे दुकान के पूरा अंधेरा दिख रहा है यहां एक पर्दा दिख रहा है।

एक रैक के ऊपर टेडी बेयर रखा हुआ है।

यहां पेड़ के कुछ पत्तियां दिख रहे हैं।

और कुछ लड़कियां रखी हुई दिख रही है ऊपर आसमान में बादल बहुत सारे दिख रहे हैं।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

दुकान के अंदर कुछ टेबुल दिख रहे हैं।

पीछे में कुछ डब्बे रखे हुए दिखे रहे हैं।

यहां पे एक बाइक दिख रहा है पीछे में एक आदमी और बैठा हुआ है और वहां खिड़की दिख रहा है।

पेड़ के बगल में एक आसमान दिख रहा है जिसपे बहौत सारे बादल दिख रहे हैं।

और लाइट जल रहा है यहां कुछ खिड़कियां दिख रही है नीचे में कुछ पर्दे दिख रहे हैं।

यहां पे एक पेट्रोल टंकी का दृश्य दिख रहा है।

बच्चे के हाथ में एक कुरकुरे दिख रहा है यहां पे कुछ बड़े आदमी दिख रहे हैं पीछे में एक पोल दिख रहा है।

जिसके अंदर बहुत सारे डब्बे दिख रहे हैं।

पीछे में कुछ बांस के पटरे लगे हुए दिख रहे हैं और पीछे में एक कपड़ा दिख रहा है।

उसके पीछे आसमान दिख रहा है आसमान में कुछ बदल दिख रहे हैं और यहां पर बड़ा सा सूर्य दिख रहा है।